रेड टी_शर्ट पहन कर --

केले रखे हुए हैं ।

सामने मिरर में बैलूंस लगी हुई हैं ।

जहां सबका प्राइस पंद्रह रुपया लिखा हुआ है ।

कुछ लोग बैठे हैं ।

लाल मैरून कलर का हॉल बना हुआ है ।

सामने टीने का कुछ बना हुआ है ।

ये एक पतली सी सड़क दिख रही है ।

उसमें छोटे-छोटे फूल के पौधे लगे हैं ।

दो डस्टपिन दिख रहा है ।

ये एक आदमी खड़ा हुआ है ।

एक स्कूल दिख रही है जिसके बाहर काफी गाड़ियां खड़ी हैं ।

आप पास में काफी बड़े बेड़ पेड़ पौधे हैं।

लिखने के लिए बेंच बनी है ।

ठीक कर रहा है स्क्रू ड्राइवर लेके।

एक किटकैट चॉकलेट लगी है ।

ये एक कमरा है ।

नीचे मार्बल की फर्श है ।

ये एक बिल्डिंग दिख रही है।

जिसके बाहर दो गाड़ियां दिख रही हैं ।

ब्राउन चियर भी लगी हुई है ।

जहां खूब हरियाली भी है छोटे-छोटे पौधे बने हैं ।

सामने ब्लॉक लिखा हुआ है ।

ये एक ऑफिस है जहां--

ये एक पीलर जैसा बना हुआ है ईंट का--